इस फोटो में हमें ढेर सारे पेड़ पौधे दिख रहे है।

पीछे एक वाइट कलर का घर बड़ा सा दिख रहा है।

व्हाइट कलर की बेडशीट एंड रेड कलर का ब्लैंकेट बिछा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में हमें एक रेड एंड ब्लैक कलर का लेटर बॉक्स दिख रहा है जिसपे भारतीय डाक लिखा हुआ दिख रहा है।